बहुत सारे पानी दिखाई देते हैं एक नाव खड़ी है और दो आदमी पानी में उतरे हुए हैं नाव चालक नाव में बैठे उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं ।

यह एक मंदिर है यह मंदिर बहुत ही अच्छी जगह पर है यहां बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आते हैं दुनिया बहुत भीड़ लगा हुआ है एक पंडित यहां सभी को पूजा करवा रहे है।

से किया गया है यहां बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस मेले में ।